यह लग रहा है बैंक है और इ बैंक में से लोग पैसे निकालने के लिए नंबर लगे हुए हैं।

यह ऐसा लग रहा है कि यह कोई कोचिंग है और इसका नाम कुछ लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी डेप।

यहाँ ऐसा जगह लग रहा है कि लग रहा है इस जगह के आगे थोड़ा वहां फैक्ट्री है वहां धुआं भी फैक्ट्री में से निकल रहा है ऐसा लग रहा है।

ये जगह तो लग रहा है कि मतलब कोई ऑफिस टाइप के लेकिन ये जो बंदा बैठा हुआ है लग रहा है कि--

ऐसा लग रहा है इस घर में की कोई सेंटर मतलब कोई कोचिंग है।

और ये एक लाइन वाला तार पता नहीं किस लिए लेकिन है लाइन वाला तार भी।